और कॉम्प्लेक्स के आगे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं बंदे खड़े हुए हैं।

बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है अलग अलग इसमें शॉप होगा।

ब्लैक कलर का पट्टी लगा हुआ है पीला मैट मतलब नीचे बिछा हुआ है।

यह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य है हरे भरे फील्ड है बागीचे गार्डन बोले तो गार्डन है।

फुल पत्तियां हैं बड़े-बड़े भी पेड़-पौधे हैं दूर--

पीले कलर का साड़ी या दुपट्टा है।

उसको राहत मिलेगी सिकाई करने से।

ये स्टेशन वगैरा ओवर ब्रिज के नीचे अलाव चल रहा है आग जल रहा है काफी सुविधाजनक है।

ये नदी है। नदी के किनारे--

इसके सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है लाइट वगैरा बिजली का तार ओर--

गया हुआ है पीले कलर का लाइट दिख रहा है हमको रात का समय है।

शरीर फिट रहेगा इसमें ब्लैक कलर का बंदा बैठा भी है।

पहाड़ भी जिंदा पहाड़ है हरा भरा लग रहा है।

अब लेडीजे भी दिख रही हैं पेड़ के नीचे अ--

ये रोड पे काफी सारा भीड़ है गाड़ियों फोर व्हीलर है टू व्हीलर है।

और संजुला शिमला शिक्षा का बोर्ड लगा हुआ है।

और किनारे-किनारे घास भी है बीच में रोड है।

आसमान साफ सुथरा है प्राकृतिक दृश्य बहोत ही सुंदर है।

दूर से काफी अच्छा लग रहा है देखने में।

बैठ बैठम बैठ के देख रहा है जो भी कुछ देख रहा हो और अच्छा --